वहां पर मुझे एक बहुत बड़ा एरिया दिख रहा ।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

ऊपर एक पोस्टर भी लगा हुआ है और यहां पर बहुत सारे लाइट्स --

यहां पर मुझे एक हॉल दिख रहा है जो --

यहां पर बहुत बड़े बड़े इमारतें नजर--

इधर उधर चल रहें हैं यहां पर बहोत सारी चीजें रखी हुईं हैं और--

और मुझे एक बहुत ज्यादा सुंदर सा एरिया देख।

चला रहे हैं और।

यहां पर मुझे बहोत बड़े--